विसर्जन के लिए आए हुए हैं आप देख सकते हैं।

उसके चारों ओर कुर्सियां लगाई गई हैं डाइनिंग टेबल पर बहोत--

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है बहुत सारी बेल भी है जो लटक रहे हैं आप देख सकते हैं।